और कुछ लोग ले रहे है कुछ लोग दे रहे है।

यहां पर गमले हैं अच्छे पेड़ लगे हैं पेड़ पौधे लगे औरतें खड़ी है और अच्छा मकान बना है।

यहां पे कुछ लोग हैं और मंदिर सा है औरतें कुछ नारियल ले रही हैं और कुछ--

यहां पे तालाब टाइप का है और माटी भी रखी है कुर्सी भी रखी है।

यहाँ पे चार-पाँच टेबलें रखी हैं कुर्सियाँ रखी हैं और टेबलें भी रखी हैं और यहाँ पे कुछ लोग झालर भी टांग रहे हैं और ये कुछ --

यहां पे इसके पास कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं और सवाला का बहुत सारा--

अच्छा लग रहा है बहुत सारी टाइल है तेल लाइनें हैं।

एक यहां पे फोटो खिंचवा रहा है अच्छी मूर्ति रखी है बुद्ध की मूर्ति है और--

लाइट लगी है यहां पे और बहुत चमकदार भी--

दो लोग बैठे भी हुए हैं कुछ चीज का इंतजार कर रहे हैं अच्छा लग रहा है काफी बहोत जोरदार प्रो--

तेल लग रही है खम्भ लाइट लगी है यहां पे--

बहोत अच्छा बैठने की व्यवस्था टाइले भी लगी है। अच्छा मकान है।

छे सात लोग हैं और कुछ चेहरा दिख नहीं रहा हैं औरत है कि मर्द है और कुर्सियों में बैठे हैं।

और यहां पर बहुत अच्छी लाइट वगैरह हो घड़ी टांगे स्टार भी टंगे हैं जो पिली कलर के नीले कलर के हैं।

टीचर बता रही हैं कि आप अच्छे से करो और गमले रखे हैं चार पांच स्कूल का--

यहाँ पे वो योगा हो रहा है चार-पाँच लड़कियाँ हैं और चार-पाँच तीन लड़के हैं यहाँ पे योगा का ट्राई बैक हो रहा है --